यह एक पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच है यह एक उत्तरकाशी की एक शाखा है यहाँ पर यह ब्रांच बनाई गयी है जिस --

यह एक ब्रांच है जो कि उत्तरकाशी की है इस ब्रांच का नाम सेंट्रल बैंक ओफ इन्ड्या है।

बहोत ही बड़ा तालाब है है कोई बहोत बड़ी नदी है और यहाँ पर यह एक बोट से फोटो खींची गई है यहाँ पर नदी के बगल में एक सिटी भी बसाए गये है जिसमे आदमी रहते --

यहाँ पर गाजर टमाटर नींबू धनिया बैंगन--

यह किसी शादी हॉल की फोटो है यहां पर है शादी की गैलरी बनाई गयी है जिसको अच्छे-अच्छे फूलों से और --

अह एक किसी कालोनी की फोटो है अह बिल्डिंग बहोत बड़ी -बड़ी इमारते खड़ी हुई हैं और अह --

यहाँ पर बहोत भारी मात्रा मे ऑटो रिक्शा खड़े हुए हैं जो कि यहाँ पर यात्रियों का इंतजार कर रहे हैं।

यहाँ पर यह दो कप हैं जिनमें कॉफी रखी हुई है और यहाँ कॉफी --

बहोत ही महंगी कोफ़ी है हैं किसी बहोत बड़ी रेस्टोरेंट की कोफि है यहा पर बहोत अच्छे तरीके से कप --